इस का रंग चॉकलेटी है।

सफेद रंग के बल्ब जल रहे हैं।

हरे रंग के पेड़ दिख रहे हैं घर के कंपाउंड पर--

जमीन का रंग चाकलेटी दिख रहा है।